इस पिक्चर में मुझे मिस्त्री दिखाई दे रहा है।

टीना से छोटा सा घर बनाया हुआ देखने को मिल रहा है।

ऊपर में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वॉल में सिल्लुक भी लिखा हुआ है देखने को मिल रहा है।

मंदिर के सामने छोटा छोटा पत्थर भी रखा हुआ है।

और इलेक्ट्रिक पोस भी लगाया हुआ है।

रास्ता के आस पास में बहुत ज्यादा ग्रास भी उगा हुआ है।

ग्रास के ऊपर में बहोत ज्यादा स्नो फॉल गिरा हुआ नजर आ रहा है।

और बहुत सारा लोग भी आया हुआ नजर आ रहा है।

गाड़ी के सामने स्पीकर भी दिख रहा है।

पहाड़ भी देखने को मिल रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर दो सिंटेक्स भी रखा हुआ है।

ब्लू और वाइट कलर की चुन्नी से डेकोरेशन किया हुआ नजर आ रहा है।

के अंदर बहोत ज्यादा बाइसिकल देखने को मिला है।

सी_सी_टी_वी फो फुटेज भी लगाया गया है।

बकेट भी दिख रहा है।

पेर के नीचे में एक घर भी नजर आ रहा है।

इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगाया हुआ देखने को मिल रहा है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत ज्यादा आदमी लोग को देखने को मिला।